एक हरा कलर का है। एक वाइट है पीछे और मकान है और पीला कलर का मकान है। बगल में टस ट्रांसफार्मर है और एथी --

बहुत अच्छा सा रूम है फोल्डिंग है उसमें ए.सी. लगे हुए हैं नीचे डेस्क बने हुए हैं उस पे फुटबॉल तीन रखे हुए हैं और कपड़े भी हैं ।